तस्वीर में ये दिख रही है जि जिसमें अनाज लगे हुए हैं एक औरत है जो कि लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है दूर-दूर में सिर्फ पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं झाड़ियां नजर आ रही है।

बगल में एक खिड़की नजर आ रही है।

लाइट है एक कार भी सफेद रंग की बगल में एक ब्रिज गया हुआ है कुछ लोग साइड में खड़े हैं|

तस्वीर में एक बस दिखाई दे रहा जो की सफ़ेद रंग की है पीछे में एन.डब्लू. ट्रेवल्स लिखा हुआ है एन.यु. हॉस्पिटल भी लिखा हुआ --

टेबल वगैरा भी रखी हुई है।

दो डस्टबिन है रेबिट बने हुए लाइटे वगेरह लगी हुई है चेयरे भी लगे हुए हैं एक हरे रंग की बोर्ड भी है।